बाहर बोहोत सारे लोग बैठे हुए हैं। बाहर एक सफेद कलर की गाड़ी खड़ी हुई है।

बाहर एक सफ़ेद गाड़ी खड़ी हुई है।

इनमे से एक परी की मूर्ति है और पांच छे घोड़े की मुर्तियां हैं पीछे एक बिल्डिंग --

काली माता की मूर्ति खड़ी हुई है। हाथ में मूड़ माला लेके शिव जी के ऊपर खड़े हुई हैं।

चारो तरफ हरी-हरी पेड़ लगा हुआ है मूर्ति तक जाने के लिए सीढिया हैं।

बहुत बड़ा ग्राउड़ है और छोटे - छोटे पेड़-पौधा लगा हुआ है।